एक व्यक्ति और व्यक्ति खड़े हुए हैं एक लेडिज खड़ी हुई है। और--

जहाँ बहुत सारे लोग या फिर कोई तहसील है जहाँ बहुत सारे लोग डॉक्युमेंट्स रखे हुए खड़े हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं यह एक कोचिंग सेंटर या कोचिंग अकेडमी का चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है आई.ए.एस. अकेडमी ।

इसमें लिखा है सोमेशर स्वमेस्वर महादेव और यहा बहुत सारे लोग खड़े हुए है लेडीज भी है और स्कूटी बाइक भी रखी--

हमें हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा हैं और ग्राउंड के चारो साइड रेलिंग हैं।

यहाँ हम देख सकते हैं यह किले के गेट का फोटो है जो ह झाड़ियों में दिया हुआ है जहाँ दो व्यक्ति खड़े हुए हैं जो ब्लू कलर के कपड़ो में दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हम देख सकते हैं यह एक ट्रेक्टर है जहाँ जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वह ट्रेक्टर को चला रहा है।